यहां पर बड़ा सा गेट दिख रहा है सामने ही रेड और ग्रीन कलर की कुछ टायरे दिखाई दे रही--

और कुछ साड़ियां ग्रीन कलर की दिख रही है सामने ही हमें--

पीछे की और हमें आसमान का कलर व्हाइट दिख रहा--

एक व्यक्ति मैदान में हमें दिख रहा--

सामने की ओर व्हाइट कलर का आसान दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ झूमर लगे हुए हैं येलो कलर के सामने ही हमें दिख रही है खिड़कियां एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

साथ में ब्राउन कलर की चेयर्स दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर का आसमान व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है बादल।

कुछ व्हाइट और रेड कलर के पत्थर भी दिखरे--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

पीछे की ओर रेड और ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने ही कुछ बैनर्स लगे हुए दिख रहे--

यहां पर पीछे की ओर हमें एक इमारत दिखाई दे रही है।

साथ में कुछ येल्लो और पिंक कलर आसमान का कलर व्हाइट दिख रहा है कुछ बैंगनी कलर दिखाई दे --

रात में ही कुछ लोग यहां पर योगा कर रहें--

और कुछ टाइले लगी हुई फ्लोर में--